गेटिंग टो नोव कम्प्यूटर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम कम्प्यूटर के अनेक भागों के बारे में सीखेंगे हम अनेक भागों को जोड़ना भी सीखेंगे
सामान्यतः दो प्रकार के कम्प्यूटर्स होते हैं डेस्कटॉप या व्यक्तिगत कंप्यूटर और लैपटॉप आजकल टैबलेट पीसीएस या टैब्स भी बहुत लोकप्रिय हैं
कंप्यूटर के कार्य एक कंप्यूटर अपने आकार के निरपेक्ष पाँच प्रमुख कार्यों को कार्यान्वित करता है
यह इनपुट के माध्यम से डेटा या निर्देशों को स्वीकार करता है
यह यूज़र की आवश्यकता के अनुसार डेटा को संसाधित करता है
यह डेटा को संचित करता है
यह आउटपुट के रूप में परिणाम देता है
यह कम्प्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस नियंत्रित करता है
कम्प्यूटर की बेसिक आर्गेनाईज़ेशन यानि मूलभूत रचना इस ब्लॉक डायग्राम में दर्शायी गयी है
इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आउटपुट यूनिट इनपुट यूनिट डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर में व्यवस्थित ढंग से प्रविष्ट करने में मदद करता है
कीबोर्ड माउस कैमरा और स्कैनर कुछ इनपुट उपकरण हैं
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस जैसे अरिथ्मैटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है और डेटा और निर्देशों को संचित करता है
विशिष्ट रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू इस प्रकार का दिखता है
इसमें यूनिट के आगे और पीछे बहुत से पोर्ट्स होते हैं
हम थोड़ी देर में उनके बारे में सीखेंगे
यह डेटा और निर्देश लेता है उन्हें संसाधित करता है और आउटपुट या परिणाम देता है
ऑपरेशंस को क्रियान्वित करने को प्रोसेसिंग कहते हैं
फिर डेटा और निर्देशों के साथ आउटपुट स्टोरेज यूनिट में संचित किया जाता है
यूनिट जो डेटा से परिणाम उत्पादन की प्रक्रिया का समर्थन करती है उसे आउटपुट यूनिट कहते हैं
मॉनिटर और प्रिंटर कुछ आउटपुट उपकरण हैं
सामान्यतः एक डेस्कटॉप कंप्यूटर 4 मुख्य भाग रखता है
मॉनिटर सीपीयू कीबोर्ड और माउस कैमरा प्रिंटर और स्कैनर भी कंप्यूटर से जोड़े जा सकते हैं
यह मॉनिटर या कंप्यूटर स्क्रीन है जैसा हम इसे कहते हैं
यह टीवी स्क्रीन की तरह दिखाई देता है
यह कंप्यूटर की विजुअल डिस्प्ले यूनिट है
यह कंप्यूटर के यूज़र इंटरफ़ेस को दर्शाता है
कीबोर्ड और माउस प्रयोग करके आप अनेक प्रोग्राम खोलकर कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं
कीबोर्ड कंप्यूटर में टेक्स्ट कैरेक्टर्स और अन्य कमांड्स को प्रविष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है
यह कंप्यूटर माउस है
विशिष्ट रूप से इसमें दो क्लिक होने वाले बटन और उनके बीच में एक स्क्रोल बटन है
बांया माउस बटन दबाकर बहुत सी प्रक्रियाएं सक्रीय होती हैं
दांया माउस बटन दबाकर गैर मानक प्रक्रियाएं जैसे शॉर्टकट्स सक्रीय होते हैं
माउस व्हील स्क्रोल बटन घुमाकर स्क्रोल ऊपर और नीचे करने में उपयोग होता है
कंप्यूटर माउस कीबोर्ड के आलावा कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने का एक वैकल्पिक रूप है
अब सीपीयू के अनेक भाग देखते हैं
सीपीयू के आगे एक मुख्य बटन है जो पॉवर ऑन स्विच है
कम्प्यूटर खोलने के लिए इस स्विच को दबाने की ज़रुरत है
एक रीसेट बटन भी होता है जो ज़रुरत पड़ने पर कंप्यूटर को दोबारा चलाने में सहायक होता है
आगे की तरफ आप दो या अधिक यूएसबी पोर्ट्स और एक dvdcd रोम रीडर राइटर भी देखेंगे
यूएसबी पोर्ट्स कंप्यूटर में पेन ड्राइव्स लगाने में उपयोग होते हैं
और dvdcd रोम रीडर राइटर एक सीडी या डीवीडी को रीड या राइट करने के लिए उपयोग होता है
अब कंप्यूटर के पीछे देखते हैं
पीछे के पोर्ट्स कंप्यूटर के अन्य उपकरणों को सीपीयू से जोड़ने में उपयोग होते हैं
यह केबल्स उपयोग करके होता है
सीपीयू के अंदर बहुत से भाग हैं
जब कंप्यूटर चलता है तो सारे भाग कार्य करते हैं और गर्म होते हैं
पीछे के पंखे भागों को ठंडा करने के लिए हवा का प्रवाह देते हैं
अन्यथा ज़्यादा गर्म होने से सीपीयू को नुकसान हो सकता है प्रायः डेटा की क्षति भी हो सकती है
यह केस कूलिंग फैन है
यह सीपीयू को सामान्य तापमान पर रखता है और ज़्यादा गर्म होने से बचाता है
पॉवर सप्लाई यूनिट को पीएसयू भी कहते हैं यह कंप्यूटर को पॉवर देता है
अब अनेक भागों को सीपीयू से जोड़ना सीखते हैं
सारे भागों को दर्शाये गए की तरह टेबल पर रखें
सारे केबल्स को दर्शाये अनुसार टेबल पर रखें
पहले मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ते हैं
पॉवर केबल को दर्शाये अनुसार मॉनिटर से जोड़ें
अब दूसरे सिरे को पॉवर सप्लाई सॉकेट से जोड़ें
यह सीपीयू का पॉवर केबल है
इसे दर्शाये अनुसार सीपीयू से जोड़ें
फिर इसे पॉवर सप्लाई सॉकेट से जोड़ें
आगे दिखाए गए की तरह कीबोर्ड केबल को सीपीयू से जोड़ें
कीबोर्ड का पोर्ट आम तौर पर पर्पल रंग का होता है
आप माउस को हरे रंग के पोर्ट से जोड़ सकते हैं
वैकल्पिक रूप से आप यूएसबी कीबोर्ड और माउस को किसी भी यूएसबी पोर्ट से जोड़ सकते हैं
बाकी के यूएसबी पोर्ट्स पेन ड्राइव्स हार्ड ड्राइव्स आदि को जोड़ने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं
यह लान केबल है
और यह लान पोर्ट है
यह वायर्ड कनेक्शन है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की अनुमति देता है
लान केबल का दूसरा सिरा मोडेम या wi फी राऊटर से जोड़ते हैं
आप wi फी कनेक्शंस को कॉन्फ़िगर या स्थापित करने के बारे में अन्य ट्यूटोरियल में सीखेंगे
जब लान पोर्ट सक्रीय होता है और गतिविधि प्राप्त करता है तो लेड लाइट टिमटिमाती है
आप देख सकते हैं कि सीपीयू पर अन्य सीरियल पोर्ट्स हैं
ये पीडीएएस मोडेम या अन्य सीरियल उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं
आप देखेंगे कि सीपीयू पर कुछ पैरेलल पोर्ट्स भी हैं
ये उपकरण जैसे प्रिंटर स्कैनर आदि को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं
अब ऑडियो जैक्स देखते हैं
गुलाबी रंग का पोर्ट माइक्रोफोन जोड़ने में उपयोग होता है
नीला पोर्ट लाइन इन जैसे रेडियो या टेप प्लेयर को जोड़ने में उपयोग होता है
हरा पोर्ट हेडफ़ोनस्पीकर या लाइन आउट को जोड़ने के लिए उपयोग होता है
अब सारे उपकरण जोड़ने के बाद कंप्यूटर चलाते हैं
सबसे पहले मॉनिटर और सीपीयू के पावर सप्लाई बटन्स खोलें
अब मॉनिटर पर पावर ऑन बटन दबाएं
और फिर सीपीयू के आगे वाला पावर ऑन स्विच दबाएं
सामान्यतः जब आपका कंप्यूटर पहली बार खुलता है तो आप काले स्क्रीन पर शब्दों की कुछ लाइनें देखेंगे
यह बायोस सिस्टमहै जो निम्न जानकारी प्रदर्शित करता है कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कंप्यूटर के पास कितनी मेमरी है के बारे में जानकारी और हार्ड डिस्क ड्राइव्स और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स के बारे में जानकारी बायोस सॉफ्टवेयर है जो सीपीयू को सबसे पहला निर्देश देता है जब कंप्यूटर सबसे पहली बार खुलता है
ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटर की बूटिंग कहते हैं
जब सारी ज़रूरी जाँचें पूरी हो जाती हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफ़ेस को देखेंगे
यदि आप उबन्टु लिनक्स यूज़र हैं तो आप ऐसा स्क्रीन देखेंगे
और यदि आप विंडोज यूज़र हैं तो आप ऐसा स्क्रीन देखेंगे
अब संक्षिप्त रूप से लैपटॉप देखते हैं
लैपटॉप्स पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट कम्प्यूटर्स हैं
एक लैपटॉप इतना हल्का और छोटा होता है कि उसको आसानी से गोद में रखकर काम कर सकते हैं
अतः इसे लैपटॉप कहते हैं
यह भी डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह समान भाग रखता है जिसमे सम्मिलित होते हैं एक डिस्प्ले एक कीबोर्ड एक टच पैड जो निर्देशित और संचार करने का उपकरण है एक cdडीवीडी रीडर राइटर और मिक और स्पीकर्स सिंगल यूनिट में बने हुए हैं
इसमें लान पोर्ट्स और यूएसबी पोर्ट्स भी हैं
यहाँ एक वीडियो पोर्ट है जिसको उपयोग करके लैपटॉप से प्रोजेक्टर जोड़ा जाता है
ऑडियो जैक्स माइक और हैडफोन्स के आइकन में आसानी से पहचानने योग्य हैं यह लैपटॉप में अंतनिर्हित कूलिंग फैन है
यह लैपटॉप को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है
लैपटॉप एसी अडैप्टर के माध्यम से बिजली से संचालित होता है और इसमें एक चार्ज होने वाली बैटरी होती है
अतः यह पोर्टेबल है और एक विद्युत स्रोत के बिना उपयोग किया जा सकता है
इसको सारांशित करते हैं
इस ट्यूटोरियल मे हमने निम्न सीखा डेस्कटॉप और लैपटॉप के अनेक भागों के बारे में और डेस्कटॉप के अनेक भागों को कैसे जोड़ें निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रॉजेक्ट को सारांशित करता है
अच्छी बैंडविड्थ न मिलाने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर उपलब्ध है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
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद